यह एक कमरे का दृश्य है कमरे कि दीवार का कलर व्हाइट है।

सीलिंग में सर्कल वाले बल्ब जल रहे हैं।

चारों तरफ प्लांट्स लगी हुई है।

लीची में पत्ते भी लगे हुए हैं पत्ते ग्रीन कलर के हैं।

सारे लीची गुच्छे में है।

स्टील के थाली के नीचे एक ब्लू रंग का रैकेट रखा हुआ है।

दुकान में बहुत सारे अलमीरा बनी हुई है।

बाहर शीशे का गेट लगा हुआ है।

मंदिर की दीवार पर बहुत सारे डिजाइन बनी हुई है।

बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

तंबू का कलर अलग अलग कलर का है।

पानी का कलर स्काई है वाटर पार्क के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

मुर्गी फार्म के अंदर छोटे छोटे मुर्गी के चूजे रखे गए हैं वह पीले रंग के हैं।

इस कमरे में एक काउंटर बना हुआ है।

काउंटर पर बहुत सारे मॉनिटर लैपटॉप रखे गए हैं।

यहां पर बहोत सारे वस्तुएं भी नीचे जमीन पर रखी हुई है।

अलमारी के ऊपर भी बड़े बड़े कार्टून रखे गए हैं।

ग्राउंड में बहोत सारे लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं।

यह एक कमरे का दृश्य है कमरे की दीवार का कलर व्हाइट है।

इस कमरे में नीचे प्लसतरा किया हुआ है।

कमरे की दीवार का कलर व्हाइट है और नीचे में व्हाइट टाइल्स लगी हुई है।

दीवार पर बहुत सारे पोस्टर भी चपके हुए हैं।

घास के ऊपर रेड कलर की कारपेट बिछी हुई है।

यह एक रोड का दृश्य से है रोड पर एक मोटरसाइकल जा रहा है।

हॉस्पिटल के आगे दो मोटरसाइकिल लगी हुई है।

यह एक अलमारी का दृश्य है अलमारी लकड़ी का बना हुआ है।

फोर व्हीलर का कलर व्हाइट है और फोर व्हीलर के आगे लिखा हुआ है आनंद मोटर्स ।

इस कमरे में एक फैन भी है वह वाइट कलर की है।